ये-ये-ये बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है एमे पार्किंग है यहाँ पर सब लोग आते हैं।

यहाँ घूमने के लिए लोग सुबह आते है और घूमते है सुंदर हवाई चल रही है और अच्छा सुंदर वातावरण--

दन दिखाई दे रहे है खूब प्यारे आम है लुपप इंसान उनको खरीदने के लिए आते है और--

ये बहुत बड़ी दु दुकान है यहा पर लेडीज कपड़े और जेंट्स कपडे दोनों प्रकार के कपड़े र रख रखते है।